परीक्षा केंद्र में एक उसकी ड्राइवर भी था

सब बना हुआ है और सभी लोग माथा झुक कर बैठा हुआ--

इस चित्र में मुझे बहोत सारे लोग जम हो जमा होते हुए दिखाई दे रहा है।

और उसके इसके ऊपर बहुत ज्यादा बल्ब भी जल रहे हैं।

इस मकान के बाहर एक पोस्टर लगाया हुआ है जिसमें ट्रैक्टर दो ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है।

ओ बांसुरी पड़कर खड़े हो रहे हैं।

और दो खिड़की तो बंद है।

इस चित्र में मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसमें एक सफेद कलर की पंखा भी दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारे खाने पीने की चीज बेच बेचने के लिए रखा हुआ है।

ये पीने के लिए जूस है खाने के लिए अलग अलग चीजें अपने हाथों से बनाए हुए चीज रखा हुआ है।

और यहां चार लोग खाना खा रहे हैं और बच्चे हैं।

और इस रास्ते के ऊपर लिखा है पिकी राइस होटल ट्राइबल फूड ।

जिसमे अलग अलग प्रकार की चित्र या कपड़े भेजा हुआ हैं ऊपर में।

इस चित्र में मुझे छोटे छोटे मूर्तियां दिखाई दे रहा काफी सारे और इस मु जहां में मूर्ति रखा है उसका रंग है लाल कलर की।

और मूर्ति के सामने में बहुत ज्यादा गेंदा के फूल दिखाई दे रहे मुझे।

और आसमान एकदम साफ और सुंदर दिखाई दे रहा है।

और उसमें स्विच भी है और कारण चलने के लिए वायर भी है।

यहां मुझे एक कमरे का दिखाई कमरे दिखाई दे रहे हैं इसमें पंखा एक तेज तेजी से घूम रहे हैं।

और भीमराव अंबेडकर का चित्र भी है और यहाँ मे तीन लोग बैठा हुआ है।

इसमें हुंडई का गाड़ी बेचता हूं इसमें एक उसका रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है।

सामने एक टेबल है उसके पीछे वाला वो जो लाल काटन है और--

बच्चों और म बच्चों बच्चों के साथ उनकी मां--